जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे--

और नीचे की ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं दुल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं।

और उस के ऊपर में बेडशीट लगी हुई है और पिल्लो भी रखे हुए हैं।

जो की तकिया छोटे है और कुछ बडे भी रखे हुए है और साइड में सोफा लगा हुआ --

और इस हॉल के सामने की और एक चैनल गेट लगा हुआ है।

जिसमे सफेद और लाल कलर का पेंट किया हुआ है।

कार खड़ी हुई है और कुछ हरे पेड़ भी लगे हुए है और आसपास के एरिया सुंदर दिखाई दे रहा --

और ग्रिल भी लगी हुई है और हम्म सामने की ओर बाइकस और स्कूटी भी रखी हुई है रोड पर।

जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं सामने की ओर ब्रिज बना हुआ है जिसमें के नीचे की ओर --

टाइल्स लगे हुए हैं और ऊपर की और टिन शेड लगा हुआ है।

और ऊपर की ओर के एरिया में टिन शेड लगा हुआ है और सामने साइड में एक--